लाल कलर की हैं और यहाँ पर टीन भी डले हैं रोड पे । कई प्रकार के फूल भी लगे हुए हैं बालकनी भी है और यह बोहत सुन्दर-सी दिख रही है।

कपड़े खरीदने आते हैं यह सफे़द कलर का है बोहत से लोग यहाँ पे सस्ते कपड़े मिलते हैं। बोहत अच्छा है और सुंदर --

यह एक माला है इसमें लाल और पीले नीले कलर के फूल लगे हुए हैं।

और उसे बेचने के लिए बाजार जा रहे हैं | लोगों ने बहुत मेहनत करके मछलियां पकड़ी है और मछलियां बहुत सुंदर दिख --